ये एक पब्लिक है और यहाँ पर मतलब इ शोरूम है जहाँ पर आप सभी लोग जा के बेड वैगरह खरीद सकते है।